हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे सामने--

कही सारे इंसान घूमते भागते दिखाई सामने की ओर पानी भरा हुआ दिखाई--

के आजू बाजू सिर्फ --

छोटी भी है नीचे भी और इधर हरी-भरी घांस-फूस लगी दिखाई दे रही हैं सामने की ओर --

किसी को टाइल्स लगाई सामने लाइटिंग जलती हुई--

एक वर्कर घूम रहा दिखाई दे रहा सामने की ओर।

मुझे इस फोटो में से गोल घूमते हुए दिखा रहे सामने--

लेडिज हैं बच्चियों ख़डी हुई दिखाई दे--

व्हाइट कलर की व्हाइट कलर से दीवाले पोती गई ऊपर व्हाइट कलर पोता हुआ दिखाइ दे अंदर की ओर व्हाइट कलर गोल घूमते हुए दिखाया गया है सामने --

इधर पर्दे वर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे सामनेको एक पलंग रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर--

यहां लाइटिंग जलते दिखाई दे रही है सामने की ओ--